और ए_सी भी लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे खन्ने खन्ने से हैं।

अ सामने नीला सा गेट है।

यहाँ पर एक पार्क है।

दुकान के अंदर सफेद कट्टे हैं।

और उनके हाथ में रस्सी है।

और जूते पड़े हुए हैं।

उसमें से एक का मुंह ब्लर है।

और नीचे बहुत सारा घास है।

ऊपर बहोत सारी साइकलें है।

और एक कुर्सी धारी हुई है।

और यहां पर एक खेत में तार भी लगी हुई है।

और बहोत सारे आदमी हैं।

में से एक आदमी बैठा हुआ है।

हरे रंग का पर्दा पड़ा हुआ है।

मंदिर के पीछे बहोत सारे पेड़ हैं।

और तार खींची हुई है।

सामने बाइक खड़ी और साइकिल है।

दूसरी तरफ एक एक और आदमी है।

और पीछे एक चर्च का सिंबल है।

जेब में फोन का कवर है।

सामने एक एल_सी_डी लगी हुई है।

और उसमें से एक का मुंह ब्लर है।

और नीचे एक लोहे का सामान पड़ा है।

एक आदमी का मुंह ब्लर हुआ है।

पर शादी का माहौल है।

और नीचे बहुत सारी कुर्चे है कुछ आदमी है।

नाव के पास आदमी हैं दो एक बैठा हुआ है।

एक आदमी है उसका मुंह ब्लर हुआ है।

और बैठने के लिए चेयर है।

सामने तारे खींची हुई है।

बहोत सारे किताबें रखी हुई है।

एक गमला है और नीचे में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है मोटरसाइकल के पास एक पाइप है।

और घर पे बहोत सारी टाइल लग रही हैं।

दवाइयों के पोस्टर लगे हुए हैं।

उनके ऊपर ताले लगे हुए हैं उसके साइड में घर है।